और चाय छननी इत्यादि समान रखे हुए हैं। वह दुकान बहुत सुन्दर लग रही है।

इस वीडियो में सामने एक --

रिपेयरिंग करता हुआ व्यक्ति --

इस वीडियो के सामने संग-मरमर के पत्थर के आकार की --

वह एक रोड की मैंपिंग कर रहा हैं।

एक सामने हॉल में --

उनके सामने एक ट्रैक खड़ा हुआ है और पेट्रोल पंप पर दो व्यक्ति जाते दिख रहे हैं।

लग रहा है वह बहोत अच्छा लग रहा --

जाल से कवर्स लगा हुगा हुआ पेड़ में पत्ते नहीं हैं।

नज़र आ रहे हैं। उसका फर्स्ट जन्मदिन मन रहा है बच्चे का।

पर्दा बोहोत सुन्दर अल अच्छी लग रही है।

सुन्दरीकरण से बनायी गयी है सड़क को।